बहोत सारे गुब्बारे लगे दिखाई दे रहे हैं पीछे एक रोड दिखाई दे रही है रोड के बराबर में एक घर दिखाई दे रहा है।

कुछ बड़े कूलर दिखाई दे रहे हैं। कुछ फ्रिज दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के ऊपर टीने दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक अस्पताल दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है एक कोका कोला का फ्रिज दिखाई दे रहा है।

पत्थर बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।